जिसमे प्याज बैगन भिंडी मिर्च और टमाटर नजर आ रहे है।

जमींन के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर जैन मंदिर बीना पोखर लिखा हुआ है बोर्ड के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है जो कि अपनी बकरी को बांध रहा है।

और कुछ सूखे पेड़ और हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और किले की पीछे की दीवार दिखाई दे रही हैं जो कि --

इसके बगल मैं दो झंडे लगे हुए हैं | झंडो के बगल मैं एक बड़ी ट्यूबलाइट लगी हुई है |

मूर्ति एक स्टैंड के ऊपर रखी हुवी है मूर्ति के आगे खाली ज़मीन पड़ी है मट्टी की।

उलटी हाथ के तरफ एक सीधे हाथ के तरफ और एक सामने की तरफ रोड नज़र आ रही है |

हमे यहाँ पे एक फूलों की दुकान नजर आ रही हैं जहां पर पीले लाल नारंगी हरे --